पुल में काम आने के लिए रखे गए हैं और ये लोडिंग होकर जा रही --

और यहाँ पे को ऑफिस टाइप का बहोत बड़ा बिल्डिंग बनी हुई है और पेड़ पौधे लगे हुए है और ये काफी अच्छी लोकेशन है ।

और काफी दिखाई देने में सुंदर है और काफी आगे पार्किंग की जगह खाली पड़ी हुई है जो काफी बाइकें लगी हुई है।

के सामने एक ऑफिस है जहाँ पे सिक्यूरिटी गार्ड गेट पे हाथ लगाए पकड़े हुए हुए है और कस्टूमर के वेलकम के लिए खड़े हुए है ।

जो एक बहेती स्थान पे बना हुआ है इसकी लोकेशन काफी प्यारी--

ये कोई घर का--